बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जो काफी बड़ी बड़ी और सुंदर हैं।

यहां पर काफी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेसेस रखे गए हैं।

डमीज पर ड्रेसेस पेहनाइ गइ हैं जो काफी--

यहां पर मुझे एक जंगल दिख रहा है जो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा हरा भरा है काफी नीट एंड क्लीन हैं।

यह पीछे सलाद भी रखा हुआ है जो काफी टेस्टी खाना है।

वॉल पर घड़ियां और लाइटें लगी है।